वो मोबाइल ले लिया है वो सेल्फी खिंच रहा है।

यहाँ पे मंदिर है मंदिर में बहुत अच्छा से सजाया गया है कपड़े का मंदिर बनाया गया है इसमें मूर्ति है।

यह दुकान है दुकान बहुत बड़ा है यह बुक दुकान है जिसमे बहुत तरह का बुक मिलता है ।

मूर्ति का स्थापना किया हुआ है बगल मे दो और आदमी हैं देखने मे बहुत अच्छे लग रहे हैं।

यह जंगल है जंगल बहुत बड़ा है जंगल में बहुत सारा पेड़ पौधा है जो अभी भीग गया है।

यह मार्केट है मार्केट बहुत बड़ा है --